मुझे इस तस्वीर में एक वीकली मार्केट दिखाई दे रहा है।

और यहां पर कई सारे सब्जी और फल भी बिक रहे हैं।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

और आसपास कई सारे पेड़ पौधे भी है।

जो मोबाइल पकड़ के है और उसके चेहरे में व्हाइट क्रीम लगाया गया है।

और बाएं तरफ ए_सी का आधा हिस्सा भी दिखाई दे रहा है।

और तस्वीर के सामने एक मर्द है।

और तस्वीर के बाएं तरफ चेयर का आधा हिस्सा है।

वे सब खाना पका रहे हैं।

और सामने के दाएं तरफ एक चेयर भी रखा गया है।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

और उसके आसपास कई सारे पेड़ पौधे भी है।

जहां पर डेरा नातूँग गवर्नमेंट कॉलेज एटानगर लिखा गया है।

उस गेट के आस पास कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिसका रंग हरा है।

मुझे इस तस्वीर में एक दुकान का अंदर दिखाई दे रहा है।

ऊपर में कई सारे लाइट्स भी है।

का रंग लाल हरा गुलाबी और नीला भी है।

और दाएं तरफ एक स्विच बॉक्स भी है।